की बंद है अंदर हमें एक पीले कलर की कुर्सी नजर आ रही है ऊपर से करकट छवे हुए हैं पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पोस्टर्स लिखे हुए हैं ऋषभ एंटरप्राइजेज और लोन पे फोन --

कुछ दिखाई दे रहे हैं लड्डू और रसगुल्ले भी बीच--

यह एक बहोत ही बड़ी सी हमें जिम दिखाई दे रही है जिम के अंदर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

किया गया है चारों तरफ लाइट्स ही लाइट दिख रही है नीचे बहोत सारे लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।

यहां पे बहुत ही सुंदर सा हमें एक नजारा दिखाई दे रहा है जो कि--

यहां पे हार्डवेयर एवं पलाई एंड पेंट्स की भी नीचे शॉप नजर आ रही है।

जिसको लगभग मढ़ई पलानी और कुछ कपड़ों से घेर घेर कर बनाया गया है।

बाहर एक बच्चा बैठा हुआ है अंदर बहुत सारी सामग्रियां रखी हुई हैं एक बल्ब जल रहा है और ऊपर कुछ कपड़े तने हुए हैं।

कुछ गाड़ियाँ जे_सी_बी ट्रैक्टरस लगे हुए हैं।

यहां पे ईंटों के ढेर भी नजर आ रहे हैं।

और सफाई ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं कार को किसी मशीन के द्वारा--

यह एक बहुत ही सुंदर सा नजारा है।